जावा में nested इफ और टर्नरी आपरेटर के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत तक आप निम्न में सक्षम होंगे nested इफ स्टेटमेंट्स और टर्नरी ऑपरेटरों की व्याख्या करने में
एक जावा प्रोग्राम में उनका प्रयोग करने में
इस ट्यूटोरियल के लिए हम प्रयोग करेंगे उबुंटू व 1110 जेडीके 16 और इक्लिपसाइड 370 इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको निम्न का ज्ञान होना चाहिए रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स और ifएल्से कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के उपयोग के बारे में
यदि ऐसा नहीं है तो उचित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी निम्नलिखित वेबसाईट पर जाएँ
नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स एक इफ स्टेटमेंट के अन्दर दूसरा इफ स्टेटमेंट nested इफ स्टेटमेंट कहलाता है
अब nested इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए सिंटैक्स को देखते हैं
इस स्थिति में यदि कंडीशन 1ट्रू है तो प्रोग्राम कंडीशन 2 के लिए जांच करता है
कंडीशन 2 दूसरे इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करके दी जाती है
यदि कंडीशन 2 ट्रू है तो प्रोग्राम स्टेटमेंट या ब्लॉक 1 को निष्पादित करता है
अन्यथा यह स्टेटमेंट या ब्लॉक 2 को निष्पादित करता है
यदि कंडीशन 1 फॉल्स है तो प्रोग्राम कंडीशन2 की जांच नहीं करेगा
इसके बजाय सीधे एल्से स्टेटमेंट यानी ब्लॉक 3 पर पहुँच जायेगा
अब इसे बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं हमारे पास शेष कोड के लिए आवश्यक इक्लिप्स इडे और स्केलेटन है
हमने एक क्लास नेस्टेडिफडेमो बना लिया है और इसे मेन मेथड में जोड़ दिया है
हम जांच करेंगे कि दी गई संख्या एक सम संख्या है या एक विषम संख्या है
हम एक nested इफ का उपयोग करके ऋणात्मक संख्याओं को भी हैंडल करेंगे
अतः मेन मेथड में टाइप करें इंट एन माइनस 5 हमने ऋणात्मक संख्या को स्टोर करने के लिए वैरिएबल एन बना लिया है
अब हम इफ कंडीशन लिखेंगे
अगली लाइन में टाइप करें इफ एन 0 कर्ली ब्रैकेट खोलें
एंटर दबाएं
systemoutप्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के अन्दर नेगेटिव numberऋणात्मक संख्या हम पहले देखते हैं कि संख्या एक ऋणात्मक संख्या है
यदि हाँ तो हम सम और विषम के लिए जांच नहीं करेंगे
यदि संख्या ऋणात्मक नहीं है तो हम सम और विषम के लिए जांच करेंगे
अगली लाइन में टाइप करें
एल्से एंटर दबाएँ अब यदि निष्पादन एल्से भाग पर आ गया है
इसका अर्थ है कि संख्या गैर ऋणात्मक है
अतः हम इस एल्से भाग के अन्दर विषम या सम के लिए जांच करेंगे
टाइप करें इफ एंटर दबाएँ Systemoutprintlnएवेन नंबर एल्से एंटर दबाएँ टाइप करें Systemoutprintlnओड नंबर अतः हम सुनिश्चित करेंगे कि विषम या सम संख्याओं की जांच करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं पर विचार नहीं किया जाता है
अब हम क्रियान्वित कोड देखते हैं
फ़ाइल को सेव एवं रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं हमें आउटपुट के रूप में ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है
अब एक धनात्मक संख्या लेते हैं
एन 5 को एन 5 से बदलें
अब फ़ाइल को सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट आशानुरूप विषम संख्या है
एक सम संख्या लेते हैं
एन 5 को एन 10 से बदलें
अब फ़ाइल को सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट आशानुरूप सम संख्या है
एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरे को शामिल करने की यह प्रक्रिया nested इफ कहलाती है
नेस्टिंग की राशि की कोई सीमा नहीं है
किन्तु नेस्टिंग के तीन स्तरों से आगे न बढ़ना एक अच्छी प्रक्रिया है
अब हम टर्नरी आपरेटर को देखेंगे
पहले मैं मेन मेथड को हटाती हूँ
हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो संख्या को 2 से विभाजित करता है
यह एक बहुत छोटा प्रोग्राम है किन्तु समस्या विषम संख्याओं को विभाजित करने में आती है
जब 7 2 से विभाजित किया जाता है तो हमें 3 प्राप्त होता है
किन्तु क्या होता है जब हम परिणाम को राउंड ऑफ करें
जिसका अर्थ है जब 7 को 2 से विभाजित करें तो हमें 4 प्राप्त होता है और 3 नहीं
साधारण शब्दों में हम अगली संख्या लेते हैं
हम देख सकते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं
मेन मेथड के अन्दर देखें एवं टाइप करें इंट एन न्हाल्फ हम एन में संख्या और न्हाल्फ में आधी संख्या को स्टोर करेंगे
अगली लाइन में टाइप करें एन 5 अगली लाइन में टाइप करें इफ एन 2 0 एंटर दबाएँ टाइप करें न्हाल्फ एन 2 एल्से न्हाल्फ एन 1 2 हम जांच करते हैं कि संख्या सम है या विषम और उसके अनुसार विभाजन करते हैं
अब क्रियान्वित प्रोग्राम को देखने के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट जोड़ते हैं
अतः टाइप करें systemoutप्रिंटलन अब फ़ाइल को सेव और रन करें जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है
हमें आउटपुट में 3 प्राप्त होता है और 2 नहीं
किन्तु यदि हम ध्यान देते हैं तो सब कुछ जो हम करते हैं एक कंडीशन के आधार पर वैरिएबल की वैल्यू सेट करना है
हमारे प्रोग्राम में लॉजिक से अधिक सिंटैक्स है
यह तब होता है जब टर्नरी ऑपरेटर कोड को साधारण बनाता है
टर्नरी ऑपरेटर एक कंडीशनल ऑपरेटर है जो nested इफ के समान परिणाम देता है
यह एक लघु सिंटैक्स प्रदान करता है और एक क्वेश्चन मार्क प्रश्नचिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है
यह एक बार में तीन ऑपरेन्ड्स लेता है
टर्नरी ऑपरेटर के सिंटैक्स के बारे में सीखते हैं
व्यंजक वह कंडीशन है जिसकी जांच की जानी है
यदि कंडीशन ट्रू है तो ऑपरेंड 1 वैरिएबल परिणाम की वैल्यू है
यदि कंडीशन फॉल्स है तो ऑपरेंड 2 वह वैल्यू है
अब इसे अपने प्रोग्राम में प्रयोग करते हैं
पहले हम if एल्से स्टेटमेंट को हटाते हैं
टाइप करें न्हाल्फ n 2 0
एन 2 एन 1 2 semi कोलोन यह स्टेटमेंट पढ़ता है यदि एन सम है न्हाल्फ एन बाई 2 है या यह एन प्लस 1 बाई 2 है
अब इसे प्रयोग करके देखते हैं
फ़ाइल को सेव और रन करें
Ctrl एस और Ctrl फ़11 कीज़ दबाएँ
जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट अपेक्षा के अनुरूप है
इस प्रकार टर्नरी ऑपरेटर कोड में क्लटर को कम करता है और पठनीयता में सुधार करता है
हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर पहुँच गए हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा nested इफ स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर के बारे में एक जावा प्रोग्राम में nested इफ स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर के उपयोग के बारे में अब इस पर एक नियत कार्य लें
000822 00816023 nested इफ और टर्नरी ऑपरेटर
निम्न पर जावा प्रोग्राम लिखें
00816023 000828 nested इफ का उपयोग करके जांच करें कि एक संख्या सम है या नहीं और 11 का मल्टीपल है या नहीं
ऑपरेटर का प्रयोग करके दी गई दो संख्याओं के बीच बड़ी संख्या की पहचान करें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर पर उपलब्ध वीडियो देखें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
यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ चलती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को पमाणपत्र देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो पर उपलब्ध है यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है
मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद